यहाँ ढेर सारा कुर्सी लगा रयला जो सब लाल कलर का हला।

वहा पे ढेर सारा आदमी खड़ा हउवन और ढेर सारा यहा पे कुरसी लगल हला और ओकर बीच मे एक बडा सा टेबल हला|

यहाँ चार सेट में फूल होला। पीला कलर क हरा कलर क और पूरा स्टेज फूलन से सजल होला।

और ये पूरा बिल्डिंग हरा लाल नीला कलर के लता से सजल हल।